आ रही है एक तगारी रखी हुई है। तगारी का रंग नजर आ रहा है सामने पार्क दिखाई दे रहा है।

यह पहाड़ को हाथ लगा रहा है। पहाड़ का रंग पत्थर का रंग लाल पत्थर काले पत्थर भूरे पत्थर --

गुब्बारें लगे हुए हैं। जमीन पर भी लाल रंग के गुब्बारें दिखाई दे रहे हैं।

प्याज टमाटर आलू दिखाई दे रहे है धनी गोभी सभी तरह की सब्जिया नजर आ रही है सामने एक गेट दिखाई दे रहा है जिसका रंग काला नजर --

यहाँ एक मंदिर नजर आ रहा है। उसके पास घाट दिखाई दे रहा है। जिसमे सीढियाँ नजर आ रही हैं।

यह एक दुकान नजर आ रही है और बाहर की ओर एक गाड़ी खड़ी है। जिसका रंग सफ़ेद नजर आ रहा है। दुकान के अंदर एक माला टंगी हुई है।

और एक ऑटो स्टैण्ड है। जहां पर ऑटो खड़े हुए हैं। एक ऑटो का रंग काला एक का गुलाबी और एक का हरा नज़र आ रहा है।

गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। कार का रंग और गाड़ी का रंग सफ़ेद और काला --